सफेद कलर की सीलिंग दिखाई दे रही है।

और एक लैपटॉप फिर दिखा दे रहा है एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है एक लकड़ी का खिड़की दिखाई दे रहा हे लाइट दिखाई दे रहा हे।

दिखाई दे रहा है यहाँ पर हरे-भरे घास दिखाई दे रहें हैं बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं दो व्यक्ति दिखाई दे रहें हैं।

गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

और यहां पर एक ए पैर पोछने का कार्पेट भी दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ है यहां पर कुछ लोग अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे पीछे की ओर बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही खिड़की दिखाई दे रहे लोहे के पिलर दिखाई दे रहे।

और झाड़ू दिखाई दे रहा दो पहिया वह आदमी दिखाई दे रहा है दो दो-तीन लाइट दिखाई दे रहा है कुछ लोग का खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पर युवती दिखाई दे रही हैऔर एक युवक भी दिखाई दे रहा है ब्रेंच दिखाई दे रही हैऔर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

पर एक जिम दिखाई दे रहा है जिम के सिलिंग में बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही है ऐ.सी. डक्टे दिखाई दे रहा है बोहत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

पर एक शोरूम दिखाई दे रहा जिसपर यामाहा लिखा हुआ है एक सर्विस सेंटर भी दिखाई दे रहा हैऔर यहां पर चार दो पहिया वाहन बाहर की ओर खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में तीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जिसमें की अ साईं बाबा की मूर्ति माता रानी की मूर्तियां --

अ फ्रेम चिपके हुए है दी दिखाई दे रहे है दीवाल पर।